उम्म मं उम ये लगा है बादल वगैरह दिख रहे है --

उम्म अ गुजरी है गुजरी में सब्जी का लगा हुआ है सब्जी में है संतरा --

अ हरियाली है पेड़ पौधे लगे है फूल का--

और एक होटल है न्यू केसर होटल उसमें उम्म लोग खाना खाने जाते हैं।

ये फ्लाइट वाला है की रेलवे स्टेशन है ये रेलवे स्टेशन है --

उम्म ये इसमें तो वो खेत है खेत में तुवल वगैरह लगे हैं --

उम्म फुलों का भी है इसमें अम्म आसपास मकान भी है ।

उम्म ये कार है ए ए उम्म शादी की अ --

कार में फुल भी लगे हैं रेड गुलाबी पिंक ।

अम्म झंडा लगा हुआ है अम्म सामने क्राउंट है टाइल्स लगा हुआ है पेड़ पौधे है आम का --

वहां रखे ग्रे कलर की सोफा सेट रखी हुई है माटिला कलर का भी रखा हुआ है अह चादरें वगैरह है।

बोलता है हैलो कहाँ यहाँ मिलता है यहाँ पे बेचते हैं और --

ये किड्स का प्लांट है इसमें बाजू में दुकान वगैरह है गाड़ियां खड़ी है साइकिल खड़ी है।

अम्म चीज़ मिलते है इसमे उम्म गोल्ड --

उसका ये होस्ट अच्छा किए हैं और क्या है उसका स्टेज बहुत मस्त बनाएं हैं वहां पे--

यहाँ पास में एक लड़का खड़ा हुआ है ।

हॉस्पिटल है अ हॉस्पिटल में मैडम वगैरह अ सर वगैरह बैठे हैं ।